नमस्कारFeatures ओएफ gchem3डी के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे मेन्यू बार फाइल टाइप फॉर्मेट्स अनेक प्रकार के मॉडल टाइप्स और बैकग्राउंड कलर को कैसे बदलें
इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टु लिनक्स ओएस वर्जन 1204 जीचेम्पेंट वर्जन 01210 gchem3डी वर्जन 01210 इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको जीचेम्पेंट से परिचित होना चाहिये
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
मैंने एक नयी जीचेम्पेंट विंडो खोली है
टेम्पलेट्स ड्राप डाउन उपयोग करके मैं डिस्प्ले एरिया पर एडेनोसिन के स्ट्रक्चर को लोड करुँगी
फाइल को सेव करने के लिए टूल बार पर सेव आईकन पर क्लिक करें
सेव एएस डायलॉग बॉक्स खुलता है
फाइल को gchem3डी में देखने के लिए इसे फाइल फॉर्मेट्स जैसे mol mdl और pdb में सेव करना पड़ता है
फाइल का नाम adenosineपीडीबी टाइप करें
डेस्कटॉप पर फाइल सेव करने के लिए डेस्कटॉप पर क्लिक करें
सेव बटन पर क्लिक करें
मैं जीचेम्पेंट विंडो बंद करुँगी
अब gchem3डी एप्लीकेशन के बारे में सीखें
gchem3डी जीचेम्पेंट के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की तरह संस्थापित किया जा सकता है
सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर उपयोग करके
सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर पर जाएँ
क्विक फिल्टर क्विक फ़िल्टर बॉक्स में जीचेम्पेंट टाइप करें
जीचेम्पेंट यूटिलिटीज के पूर्ण संस्थापन के लिए gcu प्लगइन libgcu डीबीजी और gcu बिन संस्थापित करें
मैंने पहले ही सारी फाइल्स संस्थापित कर ली थी
gchem3डी 3 डाइमेंशनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विज्युलाइज़र है
यह जीचेम्पेंट का यूटिलिटी फीचर है
जीचेम्पेंट में बनाये गए स्ट्रक्चर gchem3डी में देखे जा सकते हैं
gchem3डी खोलने के लिए डैश होम पर क्लिक करें
प्रदर्शित सर्च बार में gchem3डी टाइप करें
मॉलिक्यूल्स व्यूवर आइकन पर क्लिक करें
gchem3डी व्यूवर विंडो मेन्यूबार और डिस्प्ले एरिया रखती है
मेन्यूबार वो सभी कमांड्स रखती है जिनकी आपको gchem3डी में काम करने में ज़रुरत है
डिस्प्ले एरिया खुली हुई फाइल की विषय वस्तु प्रदर्शित करता है
फाइल खोलने के लिए फाइल सेलेक्ट करें ओपन पर क्लिक करें
ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है
फाइल सेलेक्ट करे जो आप खोलना चाहते हैं
मैं अपने डेस्कटॉप पर adenosineपीडीबी सेलेक्ट करुँगी
ओपन बटन पर क्लिक करें
डिस्प्ले एरिया पर फाइल प्रदर्शित हुई है
अब दृश्य को इमेज की तरह सेव करना सीखें
फाइल पर क्लिक करें
सेव एएस इमेज पर जाएँ
सेव एएस इमेज डायलॉग बॉक्स खुलता है
नीचे विड्थ और हाइट पैरामीटर्स पर ध्यान दें
डिफ़ॉल्ट इमेज साइज विड्थ 300 पिक्सेल्स और हाइट 300 पिक्सेल्स रखती है
आप स्क्रोलर्स उपयोग करके वैल्यू को बड़ा या घटा सकते हैं
अब फाइल टाइप विकल्प पर
gchem3डी अनेक फाइल फॉर्मेट्स का समर्थन करता है
फाइल टाइप्स जैसे वीआरएमएल पीडीएफ पंग और अन्य ड्राप डाउन सूची में उपलब्ध हैं
अगर फाइल का प्रकार नहीं स्पष्ट किया जाता तो gchem3डी फाइल के प्रकार को फाइल के नाम से निर्धारित करने के लिए प्रयास करता है
अगर यह सफल नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट फाइल टाइप में वीआरएमएल उपयोग किया जायेगा
अब स्ट्रक्चर को वीआरएमएल फाइल फॉर्मेट में सेव करें
वीआरएमएल डॉक्यूमेंट विकल्प सेलेक्ट करें
फाइल का नाम एडेनोसिन टाइप करें
डेस्कटॉप पर फाइल सेव करने के लिए डेस्कटॉप पर क्लिक करें
सेव बटन पर क्लिक करें
अब हम सीखेंगे कि वास्तव में VRMLफाइल टाइप क्या है
वीआरएमएल wrl एक्सटेंशन के साथ टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है
3डी पालीगान प्रॉपर्टीज़ जैसे वर्टिसिस एजेस edges सरफेस कलर उल्लिखित किये जा सकते हैं
वीआरएमएल फाइल्स प्लेन टेक्स्ट हैं जो ग्जिप में कम्प्रेस होती हैं
3डी मॉडलिंग प्रोग्राम्स ऑब्जेक्ट्स और सीन्स को इसमें सेव करते हैं
अब सेव की हुई फाइल को खोलें
adenosineडब्ल्यूआरएल पर राइट क्लिक करेंOpen विथ टेक्स्ट एडिटर विकल्प चुनें
टेक्स्ट एडिटर स्ट्रक्चर के बारे में सारा विवरण दर्शाता है
अब पेज सेटअप पर जाते हैं
gchem3डी प्रिंटिंग के समय 300 डीपीआई रेसोलुशन उपयोग करता है
पेज सेटअप प्रॉपर्टीज़ जीचेम्पेंट में प्रॉपर्टीज़ के समान ही है
इस क्रम में जीचेम्पेंट ट्यूटोरियल्स में मैंने पहले ही विचार किया था
मैं विंडो क्लोज करुँगी
अब व्यू मेन्यू पर जाएँ
व्यू मेन्यू सेलेक्ट करें
gchem3डी निम्न चार मॉडल टाइप्स उपयोग करके एक अणु प्रदर्शित करता है बॉल्स एंड स्टिक्स स्पेस फिलिंग सिलिंडर्स और वायरफ्रेम बॉल्स एंड स्टिक्स डिफ़ॉल्ट मॉडल है
इस मॉडल को उपयोग करके मल्टीपल बॉन्ड और करेक्ट बॉन्ड स्थितियों को देखे जा सकते हैं
मैं स्पेस फिलिंग पर क्लिक करुँगी और आप भिन्नता देख सकते हैं
स्पेस फिलिंग मॉडल अणुओं को कॉम्पैक्ट फॉर्म में दर्शाता है
सिलिंडर्स मॉडल स्ट्रक्चर्स को सिलिन्ड्रिकल पाइप्स की फॉर्म में दर्शाता है
वायरफ्रेम मॉडल स्ट्रक्चर का ढांचा दर्शाता है
बॉल्स एंड स्टिक्स पर वापस आते हैं
अब हम बैकग्राउंड कलर पर जाते हैं
डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर ब्लैक है
व्यू मेन्यू सेलेक्ट करें बैकग्राउंड कलर पर जाएँ
एक सबमेन्यू खुलता है
सबमेन्यू के अंत से कस्टम कलर सेलेक्ट करें
बैकग्राउंड कलर विंडो खुलती है
जो हम चाहते हैं उस रंग को चुनने के लिए यह विंडो अनेक क्षेत्र रखती है
ह्यू उपयोग करके हम बैकग्राउंड कलर बदल सकते हैं
स्क्रोलर पर क्लिक करेंकलर सर्कल की वैल्यू और गतिविधि में बदलाव देखें
सॅचूरेशन उपयोग करके हम कलर की कान्सन्ट्रेशन बदल सकते हैं
वैल्यू उपयोग करके समान कलर के भिन्न शेड्स प्राप्त करने के लिए आरजीबी कॉम्बिनेशन बदल सकते हैं
इसके आगे एक आईड्रॉपर आइकन के साथ प्रीव्यू बॉक्स है
आईड्रॉपर आइकन पर क्लिक करें
अपने महत्व का कलर चुनने के लिए कलर रिंग पर कहीं भी क्लिक करें
ओके बटन पर क्लिक करेंस्क्रीन पर बैकग्राउंड कलर बदल जाता है
अब सारांशित करते हैं कि हमने क्या सीखा इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न के बारे में सीखा भिन्न मेन्यूज़ फाइल टाइप फॉर्मेट्स मॉडल टाइप्स और बैकग्राउंड कलर कैसे बदलें
यहाँ एक नियत कार्य है 1
जीचेम्पेंट से सैकराइड लोड करें और फाइल को mdl फॉर्मेट में सेव करें
मॉलिक्यूल्स व्यूवर मॉलेक्युल्स व्यूअर में स्ट्रक्चर खोलें
इमेज को पंग और पीडीएफ फाइल टाइप्स में सेव करें
अनेक बैकग्राउंड कलर्स का प्रयास करें
इस उर्ल पर उपलब्ध वीडियो देखें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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद